यह किसी मंदिर के बाहर कोई एक फव्वारा की तस्वीर है जिसमें फव्वारे को बड़ी ही खूबसूरती से एक मूर्ति की रूप में ढाला गया है और इस पुरे को सफेद रंग दिया गया है।

ये किसी बिल्डिंग की तस्वीर है जिस पर पांच फ्लोर दिखाई दे रहे है बिल्डिंग अलग - अलग कलर से कलर की हुई है।

डिपार्टमेंट डेरी पार्लर लिखा हुआ है बोर्ड में उसके सामने कुछ कस्टमर अंदर जाने की कोशिश कर रहे है और एक महिला स्कूटी में बैठी हुई है।

यह और भी ऑनलाइन से संबंधित कई सारी चीज कर सकते है ऐसा लग रहा है जिसके बाहर कुछ लोग है।